मुझे यहां पर दिया भी जलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहां पर पेड़ दिखाई दे रहा मुझे साइड में पिंक कलर दिखाई दे रहा है और यहां पर मुझे --

देखिये यहाँ पे हमें रेड कलर की दीवार दिख रही है यहाँ पे हमें ब्लैक टेबल ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे हमें सेलिंग दिख रही है वाइट कलर की पंखा दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें ब्लू वाइट कलर के यहाँ पे हमें फुग्गे दिखाई दे रहे हैं।